पीछे की तरफ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के गेट के तरफ बैलून से सजावट की गई है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग को दिखाया गया है।

आसमान नीला रंग का है।

इस फोटो में हम लोग को एक स्टैचू दिख रहा है।

सामने की तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं।

और पीछे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है।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

यहां पे बहुत सारे छात्र है।

पीछे की तरफ दो बिल्डिंग है।

पीछे की तरफ पेर है।

पीछे की तरफ एक गारी है।

ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है। जहां पे संगीता इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक मस्जिद का दृश्य दिखाया गया है।

पीछे की तरफ दो बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

एक इंसान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक मैदान दिखाया गया है।

आसमान का कलर नीला और सफेद है।

इस फोटो में एक बोर्ड दिखाया गया है।

पीछे की तरफ कुछ पोस्टर लगे हुए है।

उसके हाथ में एक कटोरा टाइप कुछ है।

इस फोटो में हम लोगों को दो इंसान दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की तरफ एक गाड़ी है।

जो कि लाल कलर का है।

यहाँ पे नीचे की तरफ़ स्टील के बने हुए बैठने की जगह है।

लेफ्ट साइड में एक पत्थर है।

सामने की तरफ़ एक सीढ़ी दिख रहे है।

ग्रिल का रंग नीला कलर का है।